यहाँ ये यहा पर यह एयरपोर्ट लिनस दिखा रखा है | यहाँ पर ये एयरपोर्ट बना हुआ है | ईस एयरपोट में सभी एक बड़ा हेलीकाप्टर आया हुआ है | यहा पर यात्री यात्रा करने के लिए आये हुए है ।

यहां पर ये काफी बड़ी नदी दिखाई दे रही है। इस नदी में यहां पर ये काफी बड़ा बोट लिए खड़े है।